और एक इंसान सो रहा है कैप लगा के।

ये जो एक रूम उसके बाद यहां पे बहुत सारा एक चेयर भी रखा हुआ है लाइन में।

एक पेट्रोल पंप है उसमें तीन सर्विसमैन है उसके पास एक कस्टमर है।

और उसमें बहुत सारा पेड़ हैं लंबा लंबा पेड़ छोटा छोटा पेड़ और फ्लावर्स हैं और घर जाने के लिए सीढ़ी बना के है।

आसमान भी दिख रहा है।

इसमें जो बहुत सारा बच्चा लोग नीचे बैठकर ड्राइंग बना रहा है।

पीछे में पेड़ पौधा है।

उसने एक पिक्चर है उस पिक्चर में एक--

नीचे एक छोटा सा नदी है और नदी का किनारा में मिट्टी दिखाई दे रहा है साथ ही।

साथ में वहां में टेबल रखा हुआ है।

और इंसान लोग भी बहुत सारे हैं और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

ये जो वाइट कलर में है।

और ए प्लास्टिक में रखा हुआ है।

राइट साइड में चार इंसान खड़ा कर के है।

चेयर भी है साथ में है दीवार जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में डिजाइन बना के हैं।

ये पिक्चर में जो एक बुक स्टोर दिखाया गया है उसके बाद वाह में हमें बुक स्टोर का शॉपकीपर है।